यह एक बॉयज सैलून है।

इसमें बहोत सारे लड़के काम करते हैं।

बहोत से साधन जैसे ट्रैक्टर बाइक ऑटो रिक्शा यहां से--

बहोत सुंदर ये गिलासों का सेट है।

यह तस्वीर एक समहारोह --

यह फोटो एक बच्चे का है।

यह एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है।